अगल बगल हमें घर दिख रही है ट एक ठो टावर है चारों तरफ घास भी है छोटा छोटा।

टोटल आइटम हमें दिख रहे हैं तीन बैग यहां पे टंगे हुए हैं।

ना अ यहाँ पे लाइटिंग है विंडो है दो ठो पंखा भी चल रहा है।